लोग मंदिर के बाहर दर्शन के लिए खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक बहोत ही सुंदर सोफा दिखाई दे रहा है।

यहां पे मजदूर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं जोकि पीले कलर की टोपी--

सामने एक केबिन दिखाई दे रहा है।

जो की अलग अलग कलर के पैकेट में पैक्ड है।

सामने बड़ी ही दीवाल है जो लाल और सफेद कलर से रंगी हुई है।

जो की चारों तरफ से सीढ़ीओ से घिरा हुआ है।

इस पिक्चर में एक स्कूल का ग्राऊंड दिखाई दे रहा है।

उसके कुछ दूर में ही बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहोत सारे व्यक्ती एक साथ मिल कर--

सामने एक व्यक्ति चलकर आता हुआ दिख रहा है।

इस पिक्चर में बहोत सारे सुंदर सुंदर शॉप दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में बहुत सारे व्यक्ति लाइन से बैठ कर खाना खाते हुए नजर आ रहे हैं।

सामने एक रोड दिख रहा है।

इस पिक्चर में एक गार्डन दिखाई दे रहा है जोकि बहोत खूबसूरत है।

चारों तरफ हरे हरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

जिसके सामने एक कार दिखाई दे रही है।

तलाब के किनारे एक बहुत ही बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा है।

जिसके पीछे एक बड़ा सुंदर बगीचा दिखाई दे रहा है।

हरी हरी घासे दिखाई दे रही हैं और उनमें बहोत बड़े बड़े वृक्ष लगे हुए हैं।

सामने बैठने के लिए स्टेप्स बने हुए हैं।

इस पिक्चर में कोई एग्जिबिशन सेंटर दिखाई दे रहा है।

जिसमें अलग अलग तरह के अनाज दिखाई दे रहे--

सभी पर रेट दिखाई दे रहे हैं इनके पैकेट --